बीच में हरे रंग का प्लेट बिछाया गया है।

यह एक रूम का दृश्य है जहां पे तीन टेबुल लगाया गया है।

टेबुल के रंग लाल और काले हैं।

आदमी के बाल का रंग काला है।

यहां पे बहुत सारे टायर्स रखे गए हैं टायर के रंग काला है।

हर एक काउंटर पर शीशे लगाए हुए हैं।

कुछ लड़कियों ने अपने सर पे टोपी पहन के रखी है।

ये मेटों का रंग गुलाबी और पीला है।

अरे एक पंडाल भी बनाया गया है जिसमे हरे रंग का सफेद रंग का गुलाबी रंग का मिक्चर यूज किया गया है।

यह दो आदमी है एक आदमी के टी_शर्ट का रंग सफेद रंग का है।

घर के गेट का रंग ब्लू कलर का है।

यह एक कमरे का दृश्य है यहां पे बहोत सारे लैपटॉप्स रखे गए हैं।

यह एक तालाब का दृस्य है। यहां पे बहुत सारे श्रद्धालु लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं।

दुकान के बाहर एक चौकी भी लगाया गया है।

एक बहुत बड़ा गेट है और इसमें एक दीवाल है जोकि इक लाल रंग से पेंटेड है।

बहुत सारे लोग उसके सामने खड़े है।

यह एक प्राइज डिसटीब्यूशन का दृश्य है।